टेबल दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो में एक ऐ_सी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही--

मुझे इस फोटो में एक झरना दिखाई दे रहा है।

लड़के दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो में बहोत सारे बैग दिखाई--

मुझे इस फोटो में दो शेर दिखाई दे रहे हैं।

एक मंदिर दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो में एक माता रानी की मूर्ति--

मुझे इस फोटो में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है। मुझे इस फोटो में एक गेट दिखाई दे रहा।

घर दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो में--

हैं मुझे इस फोटो में एक मोर दिखाई दे रहा है।

हैं मुझे इस फोटो में एक मोबाइल दिख रहा हैं।

रहे है मुझे इस फोटो में एक घर दिखाई दे --

एक नदी दिखाई दे रही है।

एक पार्टी हॉल दिख रहा है।

एक टेबल दिखाई दे रही है।

एक बहोत बड़ा तालाब दिखाई--

दो बतख दिखाई दे रही है।

एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही --

मुझे इस फोटो में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

दो चार बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।